और हमें सीढ़ियां बनी हुई नजर आ रही है।

इस तस्वीर के अंदर हमें लाल सफेद और नीली पट्टी डली दीवारें दिख रही है।

आदमी दिख रहे हैं और एक सफेद बस खड़ी है।

कस्तूरपा नगर भोपाल और मोबाइल नंबर डले है।

पास में हमें बच्चे खड़े हुए नजर आ रहे है।

तस्वीर में हमें आदमी दिखाई दे रहा है और मोबाइल पर बात कर रहा है।

आदमी बैठे हैं उनके पास सामान रखा है।

इस तस्वीर के अंदर हमे पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है बीच मे।

और आसपा हमें सामने बहोत सारे हरे हरे पेड़--

पानी के एक तरफ हमें सड़क दिखाई दे रही है कच्चा रास्ता है।

जंगल में लगे हुए पेड़ हमें नजर आ रहे हैं।

और उसने मास्क लगाया हुआ है चेहरे पर--

लाइटें लगी हुई है और पंखे छत में लगे हैं।

हमें यहां पे उनके झंडे नजर आ रहे हैं भारत के।

और हमें दिखाई दे रहे हैं दुकान बनी हुई है वहां भी पेड़ लगी है।

इस तस्वीर में हमें सड़क दिखाई दे रही है दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी है।

एक गाड़ी खड़ी हुई दो गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं हमें --

हमें दिखाइ दे रहा है एक शेटर लगा हुआ है नीला जो उठा हुआ है।

क्रिकेट का मैदान है और पिच बनी नजर आ रही है।

एक बड़ी सी लाल बिल्डिंग हमें नजर आ रही है।

तस्वीर में हमें लाल रंग की दीवार दिखाई दे रही है डिजाइन बना है और हमें एक महिला और एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

एक और किसी के हाथ दिख रहे हैं खड़ा हुआ है तस्वीर में--

और हमें खंबे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें पीले रंग के और सफेद रंग के जमीन में टाइल्स लगे दिख रहे हैं।

हमें शेड डला हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे दुकान दिख रही है।

हमें रेलिंग लगी हुई नजर आ रही है।

तस्वीर के अंदर लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं महिलाएं भी है।

पानी के अंदर हमें दिखाई दे रही है महिलाएं हैं।

और बहुत सारी चीजें और दिखाई दे रही है।

इस तहसील के अंदर एक हुक्का रखा हुआ है बड़ा सा --

एक बैग रखा है उस पर एक कुशन रखा है नीला--

तस्वीर के अंदर हमें तालाब भरा हुआ पानी नजर आ रहा है।